और बहुत सुंदर है हम लोग खाते भी है बेचते भी है बजार में और --

ये बहुत बड़ा मकान है | इसमें आदमी रहते हैं | एक कार भी है और बहुत सारे कलर भी किये हैं आदमी के हाथो से --

खाने स्वादिष्ट लगते हैं वहाँ टीचर भी खड़े होकर देखते हैं।